ये मंदिर है बौद्ध धरम का। बोहोत ही शानदार मंदिर है। बोहोत ही पुराना मंदिर है। लोग यहां पर अपनी अपनी मनोकामना को लेकर आते हैं और अब मनोकामना उनकी पूरी होती हैं।

ये पार्क पार्क है ये बोहोत ही बढ़िया जिसमें सीमेन्ट वाली। रोड भी बोहोत सुन्दर है इसका।

ये सिनेमा हॉल है। इसपे फिलम चलती है पर्दे । पीछे खुर्सी पड़ी हैं। इसपे आदमी बैठते हैं।